synfig का उपयोग करके ecard animation के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम कुछ png छवियों का उपयोग करके ecard animation बनाना सीखेंगे
यहाँ हम सीखेंगे png फ़ॉर्मैट में छवियों को इम्पोर्ट करना
छवियों को एनीमेट करना
टेक्स्ट का एनीमेशन करना
एनीमेशन का पूर्वावलोकन करना
एनीमेशन को avi फ़ॉर्मैट में रेंडर करना
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1404 os
synfig version 102
आइए synfig खोलते हैं
dash home पर जाएँ और synfig टाइप करें
आप लोगो पर क्लिक करके भी synfig खोल सकते हैं
अब आइए ईकार्ड एनीमेशन बनाना शुरू करते हैं
सबसे पहले हमें अपनी synfig फाइल को सेव करने की आवश्यकता होती है
file पर जाएँ और save पर क्लिक करें
जिस फ़ोल्डर में सेव करना है उसका चयन करें
फ़ाइल नाम में ecardanimation टाइप करें और save बटन पर क्लिक करें
सर्वप्रथम हम toolbox पर जायेंगे और rectangle टूल पर क्लिक करेंगे
फिर दिखाए गए अनुसार प्रदर्शन के रूप में canvas पर एक आयत बनाएँ
हम सेटिंग्स को बदलेंगें ताकि इम्पोर्ट की गई छवि canvas के अंदर फिट हो जाए
ऐसा करने के लिए edit पर जाएं preferences पर और फिर misc पर क्लिक करें
scaling new imported image to fix canvas विकल्प पर क्लिक करें
अब ok पर क्लिक करें यह विकल्प छवियों को इस तरह इम्पोर्ट करेगा कि वे canvas के भीतर फिट हो जाएँ
कृपया ध्यान दें : हमें png फ़ॉर्मैट वाली छवियों को इम्पोर्ट करने की आवश्यकता होती है
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि jpg/jpeg जैसे अन्य फ़ॉर्मैट synfig canvas पर अलग तरह से व्यवहार करते हैं
इसके अलावा रेंडरिंग के बाद भी png छवियों का उपयोग किए जाने पर आउटपुट की गुणवत्ता बेहतर होती है
आइए synfig इंटरफ़ेस पर वापस आते हैं
file पर जाएँ और import पर click करें
मैंने आवश्यक छवियाँ my documents फ़ोल्डर के अंदर ecardanimation folder में सेव कर रखी हैं
ये छवियां इस वेबपेज पर code files लिंक में भी प्रदान की गई हैं
कृपया code files लिंक खोजें और इन छवियों को अपनी मशीन पर सेव कर लें
अब मेरे साथ साथ अभ्यास करें
bg छवि चुनें और import पर क्लिक करें
हमें bg छवि canvas पर प्राप्त हो जाती है
छवि का आकार बदलने के लिए सर्वप्रथम नारंगी बिंदु या नारंगी डक को होल्ड करें और bg छवि को canvas पर फ़िट करने के लिए माउस को दिखाए गए अनुसार अंदर या बाहर खिसकाएँ
अब फ़ोल्डर में cake छवि चुनें और import पर क्लिक करें
हमें हमारे canvas पर cake की छवि मिल जाती है इसी तरह अन्य सभी छवियों को भी इम्पोर्ट करें
ध्यान दें हमारे पास तीन लेयर cake flowers और balloons हैं
आइए अब इन छवियों का आकार बदलते हैं layers panel पर जाएं
सबसे पहले cakelayer चुनें देखें कि चयन करने पर canvas पर रिसाइज़ हैंडल दिखाई देने लगता है
नारंगी बिंदु पर क्लिक करें और cake छवि का आकार बदलें
इसी प्रक्रिया को दोहराएं और अन्य दो छवियों का भी आकार बदलें
अब छवियों को खिसकाएँ और उन्हें दिखाए गए अनुसार canvas के बाहर रखें
फिर animation panel पर जाएँ turn on animate editing mode icon पर क्लिक करें
time cursor को 30
cake लेयर चुनें
cake छवि को दिखाए गए अनुसार canvas के नीचे बाईं ओर खिसकाएँ
फिर balloons layer चुनें
time cursor को 30
keyframes panel पर जाएँ और add a keyframe पर क्लिक करें
अब time cursor को 48
keyframes panel पर जाएँ और add a keyframe पर क्लिक करें
balloons छवि को canvas के मध्य में बायीं ओर खिसकाएँ
पुनः time cursor को 60
keyframes panel पर जाएँ और add a keyframe पर क्लिक करें
flowers छवि को canvas के निचले दाएँ हिस्से में ले जाएं
फिर हम इस एनीमेशन के साथ एक टेक्स्ट की पंक्ति जोड़ेंगे
इससे पहले मैं एनीमेशन बंद कर देती हूँ
ऐसा करने के लिए turn off animate editing mode आइकॉन पर क्लिक करें
आइए टेक्स्ट जोड़ते हैं चूंकि डिफ़ॉल्ट fill colour सफेद है इसलिए टेक्स्ट सफेद बैकग्राउंड पर दिखाई नहीं देगा
इसलिए मैं इसका रंग बदलकर काला कर दूंगी
अब toolbox पर जाएँ और text tool पर क्लिक करें
फिर canvas पर कहीं भी क्लिक करें हमें input text डायलाग बॉक्स मिल जाता है
यहाँ हम टेक्स्ट happy birthday टाइप करेंगें
ok पर click करें
ध्यान दें कि अब हम canvas पर टेक्स्ट देख सकते हैं
अब layers पैनल पर जाएं और text layer चुनें
फिर parameters panel पर जाएँ और size पर क्लिक करें
इसका मान बदलकर 80 पिक्सेल करें और फिर colour मान को बदलकर बैंगनी करें
toolbox पर जाएँ और text tool पर क्लिक करें एक बार पुनः canvas पर क्लिक करें
हमें एक और input text डायलाग बॉक्स मिल जाता है
इस टेक्स्ट बॉक्स में have a wonderful happy healthy birthday now and forever टाइप करें
और फिर ok पर क्लिक करें अब हम यह टेक्स्ट canvasपर भी देख सकते हैं
parameters panel पर जाएँ और size पर क्लिक करें
इसका मान बदलकर 30 पिक्सेल करें और फिर colour को बदलकर काला करें
अब आइए layers panel पर जाते हैं
पहली text layer पर क्लिक करें और उसlayer का नाम बदलकर happy birthday कर दें
इसी तरह अन्य text layer पर क्लिक करें और layer का नाम बदलकर now and forever कर दें
लेयरों को उचित नाम देना एक अच्छी आदत है
इससे हमें भविष्य में उन्हें आसानी से ढूंढने में मदद मिलेगी
अब दिखाए गए अनुसार text layers को canvas के बाहर ले जाएं
turn on animate editing mode आइकॉन पर क्लिक करें
फिर layers panel पर जाएँ happy birthday लेयर चुनें
अब time cursor को 72वें फ़्रेम पर रखें
keyframes panel पर जाएँ और add a keyframe पर क्लिक करें टेक्स्ट को दिखाए गए अनुसार खिसकाएँ
फिर layers panel पर जाएँ और now and forever लेयर चुनें
फिर time cursor को 90
एक बार पुनः keyframes panel पर जाएँ और add a keyframe पर क्लिक करें
अब canvas पर जाएँ और टेक्स्ट now and forever को दिखाए गए अनुसार खिसकाएँ
अब हमारी synfig फ़ाइल को सेव करते हैं
file पर जाएँ और save पर क्लिक करें
आइए अब पूर्वावलोकन देखते हैं file पर जाएँ और फिर preview पर क्लिक करें
quality को 05 पर और fps को 24 पर सेट करें
preview बटन पर क्लिक करें फिर play button बटन पर क्लिक करें
हम स्क्रीन पर एनीमेशन का पूर्वावलोकन देख सकते हैं
preview विंडो को बंद करें
अंत में आइए एनीमेशन को रेंडर करते हैं
ऐसा करने के लिए file पर और फिर render पर क्लिक करें
render setting विंडो पर जाएँ
choose पर क्लिक करें save render as विंडो खोलें
document पर क्लिक करें ecardanimation folder पर क्लिक करें
इसका नाम बदलकर ecardanimationavi कर दें
target ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें एक्सटेंशन के रूप में ffmpeg चुनें
time टैब पर क्लिक करें और end time को बदलकर 110 कर दें फिर render पर क्लिक करें
आइए एनीमेशन को चलाकर देखते हैं document में जाएँ
e cardanimation folder पर डबल क्लिक करें
e cardanimationavi चुनें
राइटक्लिक करें और firefox वेब ब्राउजर का प्रयोग करके एनीमेशन चलाएँ
इसके साथ ही यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है
आइए सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने ecard एनीमेशन बनाना सीखा
हमने छवियों को इम्पोर्ट करना भी सीखा
छवियों को एनीमेट करना टेक्स्ट एनीमेशन करना
एनीमेशन का पूर्वावलोकन करना और एनीमेशन को avi फ़ॉर्मैट में रेंडर करना
यहां आपके लिए एक असाइनमेंट है flower नामक छवि खोजें जो code files लिंक में प्रदान की गई है
flower छवियों का उपयोग करके एक ऐसा ही एनीमेशन बनाएँ
निम्नलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
कृपया अपने समयबद्ध प्रश्न इस फ़ोरम में भेजें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है
यह ट्यूटोरियल इं अमित कुमार द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की स्पोकन ट्यूटोरियल टीम से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद